ऊपर फैन लगा हुआ है।

यह एक बड़ा सा जिम रूम है।

बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

बड़ा सा घर दिख रहा है।

कांच के डिजाइनर खिड़की दिखाई दे रहा है।

यहां एक बड़ी सी फैक्ट्री है।

सामने एक दुकान है और पोस्टर लगा हुआ है।

आधे पेड़ दिखाई दे रहे है।

पांच लोग ढोल बजा रहे हैं।

गाय सब बैठे हुए हैं।

एक बाइक खड़ी करी है।

स्टेयर्स लगे हैं डूअर्स ऑप्टिकल्स लिखा हुआ है।

सामने एक बड़ा सा दुकान है।

नदियाँ सब दिखाई दे रहा है।

एक आदमी फ्रूट्स का दुकान खोला है।

पास में डब्बे पे बताशा रखा हुआ है।

यहा पर बइकस है और गनस है और जी_टी रैबिट गेम है।

फर्श में मैट बिछाया हुआ है।

सामने एक लाल रंग का बड़ा सा घर है।

एक बास लगा हुआ है ब्लू कलर का टीन दिख रहा है।

फ्लावर्स और डेकोरेशन किया गया है।

यह एक बड़ा सा घर है।

घर के साइड साइडस में सिल्वर ग्रे लगा हुआ है।

बिल्डिंग के ऊपर सफेद दीवारे हैं।

साइड में टाइल्स लगा हुआ है।

सफेद रंग का बड़ा बिल्डिंग है।

टी_वी लगा हुआ दिख रहा है।

और फ्लावर वास दिखाई दे रहा है।

नीला रंग का एक गेट देख सकती हूं।

लाल और पीले रंग के दीवार है नीचे हरे रंग का मैट बिछाया हुआ है।

एक टब दिख रहा है।

सफेद रंग का फर्श है।

यहां पर एक ग्रिल है।

यह एक बहोत बड़ा जंगल है।

नीचे पूरा बिछाया हुआ है।

एक कुर्सी है सामने बोर्ड है।

यहां एक बड़ा सा बंगला है।

बहोत सारे मूर्ति सब रखे है लाल सब है।

कैलेंडर दिख रहा है साइड में बोर्ड है।

हरे भरे घास सब है।